इस चित्र में समुंद्र दिख रहा है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

अपना आइसक्रीम दिख रहा है।

इस चित्र में टोपन एंड टाउन दिख रहा है कांच लगा हुआ है आदमी खड़ा हुआ है।

बादल दिख रहा है और एक झोपड़ी दिख रही है एक झूला दिख रहा है।

आसमान में बादल हैं एक कार दिख रही है।

काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

जो कि काली और गोल्डन है।

और लड़कियों ने काला सूट पहना है।

इस चित्र में एक ग्राउंड दिख रहा है काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं।

कुछ कुत्ते और बंदर नजर आ रहे हैं।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

एक पेट्रोल पंप दिख रहा है।

काफी सारे लोगों की भीड़ हैं।

एक आदमी खड़ा है जिसने पीली टी-शर्ट पहनी है।

छोटी-छोटी घास नजर आ रही है।

इस चित्र में एक बच्ची दिख रही है।

इस चित्र में रेस्टोरेंट दिख रहा है।

इस चित्र में अस्पताल दिख रहा है।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

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं घर दिख रहा है आसमान में बादल है कुत्ता दिख रहा है।

जे_सी_पी खुदाई कर रही है बिल्डिंगें नजर आ रही हैं सूरज दिख रहा है।